इस इमेज में हमें काफी सारे हवन कुंड नजर आ रहे हैं।

ग्रीन कलर से यहाँ पर श्री मोहन नर्सरी लिखा हुआ है।

थोड़े बहुत पौधे भी लगे हुए हैं।

यह इमेज किसी रेस्टोरेंट की है।

ये दो ग्लास रखे हुए हैं एंड टिश्यू पेपर हैं।

इस इमेज में हमें एक बिल्डिंग शो हो रही है।

जिसमें एक बिल्डिंग में कंट्रेक्शन का काम है।

इस इमेज में एक गैरेज में गाड़ी खड़ी हुई है।

यहाँ पर काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

साइटों में पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

इस इमेज में कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है।

इस इमेज में हमें एक होटल नजर आ रहा है।

इसमें एक पिलर सिल्वर कलर का है और दो पिलर ऑरेंज कलर के हैं।

इस इमेज में हमें एक होटल टाइप का नजर आ रहा है।

एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ विंडोज़ हैं और काफी सारे पर्सन भी हैं। यहाँ बाहर घास भी लगी हुई है कुछ पौधे भी हैं।

और स्किन कलर के भी पर्दे लगे हुए हैं।

उसमें से एक रास्ता गया है जो कच्चा है।

इस इमेज में हमें नदी का किनारा नजर आ रहा है।

जूही के पेड़ लगे हैं एक आउल शेप में है जिसमें मनी प्लांट लगी हुई।

इस इमेज में एक पेट्रोल पंप है जो ब्लू एंड वाइट कलर से पुता हुआ है एक फ्यूल बॉक्स है।

इस इमेज में कंट्रेक्शन का काम चल रहा है।

साइड में एक मकान दिख रहा है जो यलो और फिरोज़ी कलर --

यहाँ काफी सारी चेयर्स भी लगी हुई हैं और अच्छा डेकोरेशन है।

और एक बंदा बैठकर यहाँ इबादत कर रहा है।

इसके बाहर एक एट हंड्रेड कार खड़ी है।

इस इमेज में एक खेत नजर आ रहा है जहाँ की जमीन कच्ची है।

साइडों से गाड़ियां निकल रही हैं जो एक रेड कलर की आप पे--